और यह किसी एस छत में एक कैमड़ा लगा हुआ है।

सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की लग रहा है कि ये सीमेंट की शॉप है।

साइड में दीवाल पे लिखा हुआ है अल्ट्रा टैंक टेक सीमेंट ।

तालाब में बहुत ही सवच्छ पानी दिखाई दे रहा है।

यह जगह किसी एक फील्ड का लग रहा है जोकि बहुत ही अच्छा लग रहा है।

अ बिल्डिंग में बहुत सारे खिड़की दिखाई दे रहे है और नीचे छोटे छोटे पेड़ दिखाई दे रहे है।

बहुत अच्छा से सजाया जा रहा है जो कि लग रहा है यहां पे किसी का शादी वगैरह कुछ भी होगा।

ऊपर अ बोर्ड लगा हुआ है जिसपर लिखा हुआ है एल_जी नीचे बहुत सारे एल_इ_डी टी_वी लगा हुआ है जो की ब्लैक कलर का है।

सामने बहुत सारे पेंट के डब्बे रखे हुए हैं जो की बहुत से कलर का पेंट है।

और उसके साइड में एक दुकान है जोकि लग रहा है पान की दुकान है।

सामने बगल में एक पेड़ पौधा दिखाई दे रहा उसके साइड में भी एक पेड़ पौधा है।

यह जग जगह किसी गायम हॉल की तरह लग रहा है सामने एक ए_सी लगा हुआ है उसके ऊपर बहुत सारे लाइट लगे हुए--

यहां पे कुछ फिसलने के लिए बड़ा बड़ा सब इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है जिसपे कुछ बच्चे और आदमी फिसल रहे हैं।

यहां पे अब बॉर्डर अ बोड पे लिखा हुआ है गोल्ड लोन --

टेबल पे बहुत सारे बुक्स वगैरा बोतल वगैरा रखा हुआ है।

सामने एक कार दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर में एक अह ब्रैकेट टाइप का कुछ लगा हुआ है।

यहां दीवार से घेरा हुआ है और बीच में बहुत सारे हरे भरे घास है।

ऊपर में लिखा हुआ है श्री शिवाय कलेक्शन एंड उसके नीचे लिखा हुआ है मेंस एंड किड वियर्स ।

इसके चारों ओर कुछ आदमी दिए जला रहे हैं।

और यहां पीछे एक आदमी खड़ा है जो कि लग रहा है कि यहां पूजा करने के लिए आए हुए हैं इसके--